अ यहाँ एक टपरियां है अ जहाँ पर टपरियां में दुकान लगे हुए है जहाँ पर बहुत सारे --

बोर्ड के ऊपर फूलों की माला टंगी हुई है सजी हुई है ।

अ सेब भी रखे हुए हैं अंगूर भी रखे हुए हैं आम भी रखे हुए हैं।

यहाँ बहोत सारी छोटी-छोटी अ टापरियाँ हैं और उसके पीछे चद्दर हॉल है ।